इस पिक्चर में बादल दिखाई दे रहे--

सामने बहुत सुंदर सा मैदान दिखाई दे रहा है।

और बैठने के लिए बेंचेस भी है।

सामने बहुत बड़ा सा तालाब है।

और एक व्यक्ती बाइक के ऊपर बैठा हुआ है।

जिसमें इर्ध गिर्द काफी बड़े बड़े विशालकाय पेड़ दिख रहे हैं और हरी घास पर बिछी हुई है।

इस पिक्चर में छात्राओ ने काफी सुंदर सा--

पर बहोत ही सुंदर सी हरी सी घा--

और के पेड़ हैं साथ ही साथ इसमें बैठने के लिए बैंचेस भी लगे हैं।

और महिलाएं बहोत ही सुंदर लग रही है।

जहां पर हमारा भारतीय झंडा लहरा रहा है।